जोकि ऊपर रूम है और नीचे दुकान है।

मैं देख पा रही हूं कि एक यहां बहुत बड़ी गंगा नदी है।

में फ्रिज में बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक रखा--

और बोल बत्ती लगी हुई है कुछ आदमी उसके अंदर--